और एक तरफ दुकाने दिखाई दे रही है एक लेडिज एक बच्चा जा रहा है एक तरफ बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान व्हाइट कलर का दिख रहा है।

यहाँ जंगल है जंगल मे बहोत सारे पेड़ है बहुत दूर दूर तक--

साइड में एक व्यक्ति है जो गेट खोलकर कुछ कर रहा है यह कार सुधारने वाला गॅरेज है बहुत सारी कार --

यहाँ एक कार खड़ी हुई है उसके दोनों गेट पीछे की डिक्की सब खुले हुए हैं।